जैसे की मैं यहाँ पे देख रही हूं यहाँ पे बहोत आदमियों की भीड़ है।

जेब्रा क्रॉसिंग का रंग लगा हुआ है सफेद और काला--

इस पुतले ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और नील रंग की पैंट पहनी हुई है।

और इसके पीछे एक लाल रंग की फ्रॉक टंगी हुई है।

जैसा की में यहाँ पे देख रही हूँ ये एक चर्च है।

इस तालाब में मछवारों ने मछलियाँ फसाने के लिए--

और इस एटीएम की दीवारों पे गुलाबी रंग और पीला रंग है।

जैसा की में यहाँ पर देख रही हु ये एक मैदान है और इस मैदान में एक घर है।